बड़े बड़े पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक बच्चा झूला झूलता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमे एक शॉप दिखाई दे रहा है जिस पर काफी सारे खाने की चीजें रखी हुए हैं।

हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहा है पीछे में भी एक कार दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमे एक बड़ा सा दो गेट दिखाई पड़ रहा है।

बैग्स काफी सारे दिखाई दे रहा है काफी सारे लोग दिखाई दे रहा है।

खंभा सब भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दूर मे बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमे एक होंडा की बाइक दिखाई दे रही जिसके ऊपर दो ग्लव्स एक हेलमेट रखे हुए हैं।

छोटे छोटे टोकरी दिखाई दे रहा है एक वॉच दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें चार खंभे दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है जिस पर काफी सारे फ्लावर्स दिखाई दे रहा है छोटे छोटे ग्रासेस दिखाई दे रहा है।

हरा भरा बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग छोटे छोटे घर का बहोत सारे दिखाई दे रहा है।

इस घर के पीछे भी काफी सारे घर दिखाई दे रहा है लाइट पोस्ट दिखाई दे रहा है काफी सारे तार दिखाई दे रहा है।